एक फल का दुकान है जहाँ पे हरा अंगूर है काली अंगूर है और संतरा है अनार भी है |

यह सबके कामें आ सकती हैं काले रंग की चेयर भी और लाल रंग की डायरी हैं।

टी-शर्ट पेहेन रखा है और लाल रंग का उम नीचे लेगिंस पहेन रखा है ।

एक डस्टबिन है और एक तुलसी का पौधा है बहोत सारे पेड़-पौधे हैं एक बाइक है।

यह एक फूल है | यहाँ पे बहुत सारे घुंघरू जैसे फूलें हैं | गुलाब का फूल है कई तरह के फूलें हैं |

साइड में एक बोरा रखा हुआ है एक गैस रखा हुआ है टीना है।

यहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे है यहाँ पे कई सारे औरत है जेंट्स हैं।

यहाँ पे एक माकन है ब्लू रंग का गार्डेन्ड भी है पेड़-पौधे सब भी हैं नील रंग के आसमान हैं।

ब्लू रंग व्हाइट रंग का घर मकान है खिड़कियां भी हैं बहुत --

ठीक हैं बाइक भी हैं ।

और एक टीना जैसा कुछ है मकान --

दुकान में बहुत सारी चीजें हैं ।